यह एक मंदिर के अंदर का दृश्य है इसमें काफी मात्रा में पिलर दिया हुआ है यह सारे पिलर पत्थर के बने हुए हैं।